वॉशरूम बना हुआ है ईंटें रखी हुई हैं पेड़ लगे हैं काफी सारे--

यहां पर दुकान है गुब्बारे लगे हुए हैं काले पीले।

क्यूआर का स्कैनर रखा है लड़का बैठा हुआ है बेंच पे--

गुड़िया का सामान रखा है गुड्डा रखा है कैरम बोर्ड है।

फूल लगा है गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं।

पेड़ लगे हुए हैं चट्टाने बनी हुई हैं बड़ी बड़ी।

कई तरह के पौधे रखे गए हैं ईंटे लगी हुई हैं।

अंबेडकर की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे--

पुराने मोटर साइकिल बेचे जाते हैं का बोर्ड लगा है लोग बैठे हुए हैं।

पैड्स रखे हुए हैं यहाँ पे बिस्किट है।

पड़ा हुआ है वेटिंग के लिए लोग बैठे हुए हैं बिल्डिंगें बनी हुई है।

विद्या इंस्टिट्यूट का बोर्ड लगा हुआ--

बाल्टी रखी हुई है सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है लाल कलर के रिबन लगे हुए हैं।

तलाब बना हुआ हैं पानी हैं यहाॅं पर काफी सारा कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाॅं पर--

पेड़ लगे हुए हैं लोग अंदर खड़े हुए हैं मोटरसाइकिल खड़े हुए मोटरसाइकिल --

आदमी है मोटरसाइकिल खड़े हैं बाइके खड़ी है पेड़ लगे हैं।

कमरा बना हुआ है ट्यूबलाइट लगी है पंखा लगा है।

आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर खड़ा हुआ है सामान खरीद रहा है।

धार्मिक स्थान है बादल छाए हुए--

टायर रखे हुए हैं जे_सी_बी की गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है।

औरतें आदमी लोग--

फूल लगे हुए हैं आम की पत्तियां लगी हुई हैं।

यहाँ पर माता रानी की स्टेज सजा हुआ है।

ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं पेड़ लगा हुआ है।

आदमी बैठा हुआ है कोई लाल रंग की कुर्सी रखी है।

यहां पर रोड बना हुआ है दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं।

पेंसिल्स रखी है सैनिटाइजर रखा हुआ है।

बुद्ध महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियां बनी हुई है।